यहां काफी सारे रंग बिरंग की लाइटें जल रही हैं।

यहां कुछ लोटा भी है।

यहां हरा रंग के कारपेट बिछी हुई है।

यहां एक आदमी है ये आदमी हाथी के सूंड पर बैठा हुआ है।

यहां बाउंड्री का रंग नीला है यहां बाउंड्री पर कुछ चित्रकार किया हुआ है।

यहां दीवार का रंग रंग बिरंगी से रंगा हुआ है।

बैकग्राउंड काला नजर आ रहा है लाइटें जल रही है।

जो सभी लोग हैं लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है।

यहां पे एक बेसिन भी है।

यहां पर सट सजा हुआ दिखाई दे रहा है।

दीवार का रंग नीला रंग से रंगा हुआ है यहां धूप नजर आ रही है।

दीवार का रंग सफेद रंग से रंगा हुआ है यहां छोटे छोटे पौधे भी उगे हुए हैं।

यह तस्वीर किसी डाकघर की है।

यहां पे काफी सारे लोग हैं जिनमें से कुछ महिलाएं तथा पुरुष है।

यहां पे डाक घर निर्यात केंद्र लिखा हुआ है।

यहां लोहे का गेट लगा हुआ है।